वह आदमी ने चश्मा पेहना हुआ है उसकी पोशाक सफेद रंग की टी शर्ट शर्ट और ग्रे रंग की पैंट है।

यह एक सैलून का चित्र है इसमें एक व्यक्ति काले रंग के कपड़े पहने खड़ा हुआ है और सैलून का डेकोरेशन भी ब्लैक कलर का है।